मैगी अच्छा है देख लो सभी --

ह्या चित्रामध्ये फैंसी आइटम आहे कोल्ड्रिंक्स आहे सबी बेस्ट हे दो गर्ल्स है एक आंटी है।

एसमे ये दो कार है दो कार है एक वाइट कार है एक सीमेंट कार है एक ब्लू क़ार है अच्छा है दे--